पैंट्स मिलते हैं जिन्हें हम अपने घर पर यूज करते--

मौसम भी काफी खराब लग रहा।

और एक लड़का मशीन पर एक्सरसाइज कर रहा है।

बहुत सारे बच्चे अक्यूरेसी के साथ पढ़ रहे हैं।

यह एक बजार का फोटो हैं।

और गाड़ियां भी काफी दिखाई दे र--

शांति दी चाय की शॉप के पास है चाप की शॉप भी है और यहां --

यहां एक लेडीज भी खड़ी हुई है।

मंदिर के सामने ही एक कैमरा लगा हुआ--

परवेश द्वार पर बहुत सारे बैलूनस लगाए गए हैं जो दिखने मे काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

ये एक दुकान का फोटो है इसमें बच्चों के जींस पैंट और लड़कों के--

देखने में ये नजारा बहुत ही सुंदर है।

यहाँ पर कुछ वृद्ध लोग भीं इकट्ठा हुए हैं।